इस तस्वीर में यह नजर आ रहा है कि एक चट्टान है जिसके ऊपर कुछ लोग खड़े हैं नीला आसमान नजर आ रहा है आसपास हरे पेड़ पौधे नज़र आ रहै है।

इस तस्वीर में बोहत सारी महिलाएँ और कुछ पुरुष नज़र आ रहे हैं।

इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है की कुछ लोग मेज पर बैठे हुए है।

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है की एक चार पहिया वाहन है जिसकी एक पुरुष मरमत कर रहा है।

इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है की एक इमारत बनी हुई है आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए है।